यहां सामने एक शॉप दिखाई दे रहा है।

जिसके मिरर के अंदर कुछ सामान भी दिखाई पड़ रहे हैं।

जो अभी निकल या डूब रहा होगा।

और आसमान की स्थिति पूरी साफ है।

और यहां का व्यू जो है वह बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है।

यह बिल्डिंग काफी ऊंची नजर आ रही है।

और यह बिहार सांस्कृतिक--

विद्यापति आश्रम है--

और इसके ठीक बगल में शगुन सारी---

और इसके अगल-बगल में काफी घर भी हैं।

जहां पर कई सारी मछलियां भी रखी हुई है।

और यहां पे एक व्यक्ति इन मछलियों को---

पानी देते हुए भी नजर आ रहे हैं।

ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

सामने के साइड में गेट दिखाई दे रहा हैऔर कुछ दीवार पे---

जिसका एक पहिया बड़ा और आगे का पहिया छोटा दिखाई दे रहा है।

और इसके ठीक सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

वो फोन पे बात करते हुए--

और यहां पे दो लोग नजर आ रहे हैं।

जो एक व्यक्ति के हाथ में कुछ---

और पीछे के साइड में एक --

एक मछली है और उसके ऊपर में मेरे ख्याल से वो---

यहां से व्यू काफी अच्छा आ रहा है।

और एक व्यक्ति एक चट्टान पे बैठे छोटे से --

वो इस व्यू का मजा ले रहा देते दिख रहा है।

यह फोटो किसी गार्डन का है।

हरे भरे गार्डन की तरह दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे कई सारे डिजाइंस भी बने हैं।

और कुछ लंबे-लंबे पौधे भी दिखाई पड़ रहे है।

कुछ व्यक्ति है जो शॉर्ट्स पहने घूम रहेते हुए दिखाई पड़ रहे है।

क्या शाम का समय हो सकता है।

इस मंदिर का कलर जो है वो पता नहीं चल पा रहा है।

और इसके चारों तरफ हरियाली भी है ।

जो एक कार के अंदर से खींची गई है।

और यहां पे कुछ गाड़ियां ही नजर आ रही हैं।

यहां पर शादी की तैयारियां चली जा रही है।

और इसका लुक एक महल जैसा दिखाई पड़ रहा है।

ड्राई कीलिंग जेंटल यानी यहां पे क्लीनिंग सेंटर दिखाई दे रहा है।

और इसका जो सामने एक बोर्ड है।

यहां पे कुछ एक सिख धर्म के लोग हैं जो गाना गा रहे है।

और पीछे कुछ व्यक्ति हैं।

और सामने के साइड में एक व्यक्ति---

ढोल बजाते दिखाई दे रहा है।

जहां पे तौलियों के ऊपर---

वह देखने में काफी अच्छा लुक दे रहा है।

सामने के साइड में एक एसी भी नजर आ रहा है।

कुछ फोर व्हीलर्स और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं सामने में बड़ा और घना---

अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है।

बच्चा जो है वो गोद में है।

शायद ये इस बच्चे का ही जन्मदिन हो सकता है।

इस तस्वीर में एक --

बाघ जो है वो उल्टा---

वो बैठा हुआ नजर आ रहा है।

शायद यह तेल निकालने की प्रक्रिया है।

और इसके बगल में कुछ घर भी हैं।

और इन सभी टी-शर्टों पे उन लाइटों का फोकस भी दिखाई दे रहा है।

और इस दरवाजे के आगे एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सामने दो राइनो --

इस तस्वीर में एक मॉल का पिक्चर है।

उस पोस्टर पे आधा लिखा शब्द दिखाई दे रहा है।

और यह यह एक मंदिर का फोटो है।

और इसके अंदर किसी मूर्ति का भी --

और यहां पे कुछ व्यक्ति जो हैं वह एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं।

मेरे ख्याल से यह कटकली का डांस परफॉर्मेंस है।

यह एक मंदिर का पिक्चर है।

जिसके सामने कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

और यह बच्चे अपने हाथ को---

एक बड़े से गोलाकार बनाकर----